गाँव की लड़की मीना डगमगाती हुई काँपती हुई और थकी हुई सी स्कूल से घर वापस आई
वो बदन दर्द और सर दर्द भी बता रही थी
घबराई माँ उसके पास आई और ध्यान दिया कि उसे बहुत बुखार है
फर्स्ट एड ओन फीवर के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
यहाँ हम बुखार के लक्षण प्राथमिक देखभाल और डॉक्टर से परामर्श के बारे में बात करेंगे
कोई भी व्यक्ति जिसका तापमान सामान्य से ऊपर यानि 968 से 1004º फारेनहाइट से ऊपर जाता है उसे बुखार हुआ माना जाता है
अब देखते हैं बुखार के क्या लक्षण होते हैं तापमान बढ़ता है पीड़ा और दर्द डगमगाना और काँपना अत्यधिक सरदर्द और गला ख़राब होना
माँ ने उसकी कँपकँपाती स्थिति को देखकर उसको गर्म रखने के लिए एक कम्बल में लपेट दिया
अब देखते है कि बुखार की स्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है
गुनगुने पानी से गीले किये हुए कपडे से मरीज़ का बदन पोछें
मरीज़ को पीने के लिए बहुत ज़्यादा पानी दें
व्यक्ति को कम्बल या मोटे कपडे से न लपेटें
अपने आप दवाइयाँ न दें
हमेशा डॉक्टर से परामर्श के बाद ही दवाइयाँ दें
ताज़ी हवा बंद न करें
वस्तुतः ताज़ी हवा बुखार को हल्का करने में मदद करती है
मरीज़ के निम्न लक्षण दिखने की स्थिति में तत्काल चिकित्सा दें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी httpspoken tutorialorgNMEICT Intro पर उपलब्ध है
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद